यह एक फील्ड दृश्य है। आगे बहुत से घर दिखाई दे रहे हैं जो बहुत सुंदर लग रहे हैं।

इसका कलर हरा है। पीछे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं और अ कुछ क घर भी साथ में दिखाई दे रहे हैं।

यह एक बगीचे का दृष्य प्रतीत होता है आगे बोहोत से पौधे दिखाई दे रहे हैं बोहोत हरे हरे पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर एक पेट्रोल पम्प का दृश्य दिखाया गया है आगे मे एक घर बना हुआ है जिसके ऊपर सोलर पैनल लगे हुए है | एक पोल दिखाई दे रहा है।

बल्ब लगा हुआ है। यह शाम का समय है जो बहुत उजाला-उजाला कर रहा है। एक मंदिर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है ए-एक बड़ा घर भी दिखाई दे रहा है।

यह बोहोत सुंदर प्रतित हो रहा है बहोत दूर एक घर दिखाई दे रहा है एक ब्लू कलर का आ बैठने का व्यवस्था किया गया है तथा ए-ए हरे-हरे घास उगे हैं।

यहाँ पर कुछ बाइक भी दिखाई दे रही है। एक अ बाइक का पहियाँ निकलकर लगा हुआ है। एक रेलिंग दिखाई दे रही है। ऊपर पंखा दिखाई दे रहा है।

यहा से यह दृश्य बहुत सुन्दर प्रतीत होता है जिसमें बहुत से पे पेड़ लगे हुए है तथा कुछ साइकलें खड़ी हुयी है। एक जाली लगा हुआ है। वो नीचे हरे कलर का घास ऊगा हुआ है।

यह एक बाइक का शोरूम है अंदर बोहोत से बाइक रखे हुए हैं तथा बाहर भी एक बाइक दिखाई दे रहा है जिसमे दो सीढी दो लगी हुई हैं और उपर नीला आकाश है यहाँ एक अ लैम्प लगा हुआ है जो रात होने पर निश्चिंत ही जलता होगा और--

यह एक फील्ड दिखाई दे रहा है जिसमे बहुत से अ बहुत से लड़के खेलने का प्रयास कर रहै है कुछ ढेले फेंके हुए है तथा फील्ड के आगे बहुत से पेड़ लगे हुए है जिसका कलर हरा है फील्ड के इधर एक घर दिखाई दे रहा है जो हरे कलर का है।

बहुत सी गाड़ीयां खड़ी हुई हैं कुछ बाइकें भी हैं एक ट्रक भी खड़ा हुआ है। कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहें हैं कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं ऊपर नीला आकास भी है।

इ यह किसी स्कूल का दृश्य प्रतीत होता है बहोत से बच्चे बैठे हुए हैं तथा कुछ अ बच्चे एक बच्चा खड़ा भी हुआ है बच्चो का ड्रेस का कलर अ कत्थई तथा अ सफेद है।